यह एक बाइक का है शोरूम का दृश्य है हमने पाँच-छे बाइके खड़ी की है।

ये मेन रोड का दृश्य है बगल में दो ठेले लगे हुए है ये चैट कॉर्नर का ठेला हैबीच में एक आदमी खड़ा--

मंदिर रेड कलर से पैंट किया हुआ है एण्ड पीछे के तरफ काफी बड़ी झड़िया और पेड़ है कुछ मकाने भी है।

एक बाईक शोरूम का दृश्य है जोकि होंडा का है बाहर होंडा का बोर्ड लगा हुआ है मेन गेट खुला है।